इस इमेज में सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर एक फिसल पट्टी और बैठने की बेंच नजर आ रही है।

इस इमेज मे एक बिल्डिंग बनती दिखाई दे रही है जहा पर नीचे सड़क पर एक बाइक भी खड़ी हुई नजर आ रही है।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

इस इमेज में सामने एक दरवाजा दिख रहा है जो बंद है और नीचे सीढ़ी भी नजर आ रही हैं।

इमेज में देखिएगा सामने एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर काफी सारे टेबल कुर्सी नज़र आ रहे हैं।

जहां पर टेबल पर बी_पी चेकर मशीन और सैनिटाइजर रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर एक कार दिखाई दे रही हैं जिसका दरवाजा खुला है और दो लोग उसे रिपेयरिंग करते नजर आ रहे है।

इस इमेज में यहां पर एक फोटो दिखाई दे रहा हैं नीचे ऑटो रिक्शा के पास कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे एक फिश मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग मछली खरीदते हुए नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर ये ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है सामने मेट्रो पुल भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है और सामने कई सारे पेड़ भी यहां पर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है ऊपर डार्क इंक टैटू लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा एक मन्दिर दिखाई दे रहा है और नीचे कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग गाड़ी में पेट्रोल भराते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में एक आइसक्रीम पार्लर दिखाई दे रहा है जहां पर फ्रिज के ऊपर एक बोटल रखी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और पानी का पाइप भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर पर्वत के पास में एक लड़का खड़ा है जो पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर कुछ लोग सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और बीच में देखिएगा बैठने की बेंचेस भी लगी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर मैदान दिखाई दे रहा है और एक बिल्डिंग भी सामने नजर आ रही है।

इस ईमेज में तकिया का सामने यहां पर फलों की दुकान दिखाई दे रही हैं जहां पर कई सारे फ्रूट्स नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर दो ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है और दो लड़के मोबाइल देखते हुए नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखिएगा यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पर देखिएगा कुरकुरे के पैकेट टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे को यहां पर एक फिश मार्केट दिखाई दे रहा है और काफी सारी मछलियां यहां पर नज़र आ रही है।

इस इमेज में को यहां पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है और नीचे कुछ पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा यहां पे सामने एक दुकान दिखाई दे रही है और यहां पर नजर आ रही है।

इस इमेज देखिएगा यहां पे एक मैदान दिखाई दे रहा है और बेंचस पे दो लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पे एक हाल दिखाई दे रहा है और इसमें ऑफिस बना हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक शोकेस दिखाई दे रहा है जहां पे टाटा मोटर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे एक हाल दिखाई दे रहा है और ऊपर लाइटों का झूमर भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है और नीचे कुछ अ लड़के बैठे हुए नजर आ रहे हैं।